वह एक लाल कलर का कुर्सी पर बैठा हुआ है। उसके पीछे बहुत सारे बुक रखा गया है।

रखा गया है उनको अराधना के लिए एक थाली भी तैयार किया गया है और एक ब्राह्मण है जोकि इन सब को अभी पूजा कर रहा है। पास में कुछ वॉल भी लगा हुआ है जोकि स्काई-ब्लू रंग का है।